बहुत सारे फूल और गमले से--

जो बिल्कुल मंदिर के बाहर के क़रीब है।

और कुछ स्टैचू भी कपड़े पहनते--

है गाइस आप ये देख सकते हैं।

स्विमिंग पूल का छोटा सा पार्क है।

इस दुकान के अंदर छोटे छोटे समान बिखरे हैं।

एक बहोत बड़ी इंटरप्राइजेज की दुकान नजर आ रही है।

एक बहोत बड़ी मस्जिद है उस मस्जिद मे अंदर बहोत सारे लोग--

हैलो गाइस आप ये देख सकते है बहुत बड़ा कमरा है उस कमरे के अंदर बहोत सारे टेबल कुर्सी है और।

बलूंस टंगे हैं बहोत सारा दरवाजा दरवाजे का कलर रेड ब्लैक --

और इतने सुंदर नजारे का आनंद ले रही--

खाली नहीं है आना है जो कि से।

बहोत बड़े-बड़े झरने हैं उसके बगल में बहोत बड़े-बड़े घने जंगल हें।

सो हेलो गाइज आप यहां देख सकते है बहोत बड़ी मकान नजर आ रहा है और इस मकान का नाम हो गया भारत माटस रिपेयर पाटस ।

सो हेलो गाइस यहां पे देख सकते है एक बहोत बड़े भीडियो कान की--

व साइड में प्रसिद्ध है और एक ऐसा डांस है जो पहली बार देखा गया है।

हैलो गाइस आप ये देख रहे है बहोत बड़े भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा हैं।

शॉपकीपर का काम कर रहे है।